यहाँ पे लोग घूमते-फिरते हैं।

और यहां पे प्रभु श्रीराम की पूजा होती है।

यहां पे खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है।